और बहुत ही बढियां है इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं।

यह एक विद्यालय है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है ।.

और यहा का पानी बहुत ही सुंदर और यहा का समान हर एक समान बहुत ही सुंदर और बढ़िया है।